यह एक नदी का दृश्य है नदी पूरा पानी से भरा हुआ है गहरा पानी--

यह एक बस का दृश्य है बस का कलर ग्रीन और व्हाइट में है।

बस के पीछे एक नदी है।

इसके सीलिंग में एक ब्लैक कलर का फैन भी लटका हुआ है।

यह एक अंडा दुकान का दृश्य है इस दुकान मे ऊपर करकट लगा हुआ है।

कमरे में छे सात लड़के भी खड़े--

यह एक लाइब्रेरी का कमरा का दृश्य है इसके दीवार का कलर व्हाइट है और नीचे वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है।

यह एक श्रृंगार स्टोर का दुकान का दृश्य है इसके सीलिंग पर व्हाइट पुट्टी किया हुआ--

गेट के आगे एक कुर्सी लगा हुआ है।

इस दुकान के फर्श पर टाइल्स लगी हुई है।

यह एक होटल के कमरे का दृश्य है इसके फर्श पर ब्राउन कलर की टाइल्स लगी हुई है।

यह एक रेस्टोरेंट का दृश्य है रेस्टोरेंट के फर्श पर वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है।

सीलिंग में सर्कल वाले बल्ब लगे हुए हैं।

इस मैदान के नीचे में छोटे छोटे घांस भी जमे हुए हैं।

एक केक दुकान का दृश्य है इस दुकान के पोस्टर पर लिखा हुआ है द माही केक ।

यह एक कपड़े दुकान का दृश्य है दुकान का कलर ग्रीन और वाइट कलर का है आगे में ग्रिल का गेट है जो ब्राउन कलर का है।

सीलिंग में वाइट कलर का पेंट किया गया है।

इसमें छोटे छोटे केबिन जिस बना हुआ है।